सामने एक टेबल दिख रही है यहाँ पर कांच का बना हुआ है यहाँ इसके अंदर बहुत सारे केक रखे हुए हैं जो कि बहुत टेस्टी दिख रहे हैं और कुछ चाकलेट केक दिख रहे हैं कुछ येलो केक दिखाई पड़ रहे हैं। सामने इसपे कागज़ का डब्बा ऐसा रखा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

ने एक बडी सी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है जो कि ब्लू और येलो कलर में दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारी कु कुर्सियाँ दिखाई पड़ रही हैं जो कि रेड कलर में दिखाई पड़ रही है।

छत का पिक है। यहाँ ब्लैक कलर दिखाई पड़ रहा है और सामने ये गोल सा बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। पैनल बना हुआ है। यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है इसमें बहुत सारी लाइटें चमक रही हैं जो कि वाइट कलर और येलो कलर में दिखाई पड़ रही है।

ग्राउंड जैसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए है। पीछे दिवार दिखाई पड़ रही जो कि ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर बहोत सारे टावर भी लगे हुए हैं जिनका ब्लैक कलर दिखाई पड़ रहा है पीछे पेड़ ब्लैक कलर के दिखाई पड़ रहे है। ऊपर आसमान का कलर ब्लैक कलर वाइट कलर में दिख --

सामने एक बाइक भी दिखाई पड़ रही है। साइड में एक पानी का डब्बा रखा हुआ है साइड में टिन भी रखी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर बहोत सारा कचरा पानी पड़ा हुआ दिखाई पड रहा है। सामने एक बैनर भी लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है ऊपर मकान में खिड़कियाँ भी दिखाई पड़ रही हैं जो कि ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रही हैं।

कुछ लकड़ी के हैं कुछ प्लास्टिक के हैं निचे सीपीयु भी रखे हुए है नीचे की ज़मीन ब्लू कलर वाइट कलर में दिखाई पड़ रही है पीछे की दीवार ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है सामने टेबल पे कुछ कोपीस भी रखी हुई दिखाई पड़ रही है।

टेबल दिखाई पड़ रही है उस पर एक सरस्वती माता की मूर्ति रखी हुई है और साइड में गणेश जी की भी मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पे दो ग्रीन कलर के फ्लावरपोट जैसे रखे हुए हैं।

नीचे एक येलो कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है। नीचे फर्श ग्रे कलर ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ यहाँ पे ईंटें बिछी हुई दिखाई पड़ रही। बगल में ही बड़ा सा बोर्ड दिखाई पड़ रहा है।

एक ई-रिक्शा दिखाई पड़ रहा है जो कि रेड कलर का है इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है सामान को रस्सी से बांधा गया है यहाँ बोरियाँ रखी गयी है कुछ बोरी ऊपर बंधी हुई --